एक सिंघासन है गद्दी है।

बहुत सारे सामान रखे हुए हैं इसमें टूल है।

अ सुबह-सुबह का माहौल है।

अ बहुत कुछ बिका रहा है डब्बा में पता नहीं --

नीचे डॉक्टर्स लग रहे हैं दिखने में मा --